नमस्कार जीचेम्पेंट में ओर्बिटल ओवरलैप के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे भिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स के बारे में ऑर्बिटल्स को घुमाना और रीसाइज़ करना ऑर्बिटल ओवरलैप्स के प्रकार यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल एक मैथमैटिकल फंक्शन है
यह परमाणु में इलैक्ट्रॉन के तरंग स्वभाव का वर्णन करता है
ऑर्बिटल स्पेस का वह क्षेत्र है जहाँ इलैक्ट्रॉन के पाये जाने की सम्भावना अधिकतम होती है
यह एक एस ऑर्बिटल है
यह स्फेरिकल स्फेरिकल शेप रखता है
यहाँ भिन्न अक्षों पर प ओर्बिटल्स हैं
प ओर्बिटल्स dumb बेल डम्ब बेल शेप के होते हैं
आगे हमारे पास भिन्न अक्षों पर डी ऑर्बिटल्स हैं
डी ऑर्बिटल्स दोहरे dumb बेल शेप के होते हैं
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोली है
सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में सीखते हैं
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
ऑर्बिटल प्रॉपर्टी विंडो खुलती है
यह विंडो निम्न क्षेत्र रखती है जैसे कोएफिशिएंट कोअफिशन्ट रोटेशन और टाइप सबसे पहले मैं टाइप के साथ शुरू करुँगी
डिफ़ॉल्ट से एस ऑर्बिटल सेलेक्ट किया हुआ है
अब प डीएक्सी और डीज़ स्क्वायर ऑर्बिटल रेडियो बटन्स पर क्लिक करें
ध्यान दें कि इसके एक तरफ भिन्न ऑर्बिटल शेप्स प्रदर्शित हैं
आगे कोएफिशिएंट कोअफिशन्ट और रोटेशन प्रॉपर्टीज जाँचें
कोएफिशिएंट कोअफिशन्ट प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ 100 से 100 तक होती है
कोएफिशिएंट कोअफिशन्ट क्षेत्र वैल्यूज उपयोग करके हम ऑर्बिटल का साइज बदल सकते हैं
ध्यान दें कि इसके एक तरफ के ऑर्बिटल का साइज बदल गया है
रोटेशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज 180 से 180 तक होती हैं
हम ऑर्बिटल्स को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा सकते हैं
अप या डाउन एरोज़ उपयोग करके वैल्यूज बदली जा सकती हैं
अब देखें कि भिन्न तरह के पॉजिटिव ओवरलैप्स को दर्शाने के लिए ऑर्बिटल्स का उपयोग कैसे होता है
यहाँ भिन्न ऑर्बिटल्स के पॉजिटिव ओवरलैप्स के लिए स्लाइड है
s sओवरलैप s pओवरलैप p pओवरलैप और p प side वाइज ओवरलैप
अब डिस्प्ले एरिया पर हाइड्रोजन अणु बनायें
कीबोर्ड पर ह दबाएं
कोअफिशन्ट की वैल्यू 1 सेट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें
निश्चित करें कि बॉन्ड लेंथ लगभग 130 हो
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
हाइड्रोजन अणु बनता है
अब s एस end ओन ओवरलैप के साथ शुरू करें
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
एस ऑर्बिटल पर क्लिक करें फिर हाइड्रोजन अणु के हाइड्रोजन परमाणुओं पर क्लिक करें
s एस end ओन ओवरलैप को देखें
अब p प end ओन ओवरलैप बनायें
कीबोर्ड पर फ़ दबाएं
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें
निश्चित करें कि बॉन्ड लेंथ लगभग 200 हो
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
फ्लोरीन अणु बनता है
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
प ऑर्बिटल पर क्लिक करें
p प end ओन ओवरलैप बनाने के लिए हमें प ऑर्बिटल्स की क्षैतिज दिशा में ज़रुरत है
अब रोटेशन वैल्यू को 90 तक बढ़ाएं
प ऑर्बिटल पर क्लिक करें
एक फ्लोरीन अणु पर क्लिक करें
इसी प्रकार प्रक्रिया दोहराएं और प ऑर्बिटल को 90 तक घुमाएं
फ्लोरीन अणु पर क्लिक करें
यदि आप ऑर्बिटल को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तो उस स्थिति में आप ऑर्बिटल को रीसाइज़ कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए हमें कोअफिशन्ट की वैल्यू बदलनी पड़ेगी
ऑर्बिटल पर राइट क्लिक करें ऑर्बिटल सेलेक्ट करें फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें
ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुलता है
उचित ओवरलैप न मिलने तक कोअफिशन्ट की वैल्यू घटाते जाएँ
क्लोज बटन पर क्लिक करें
मैं अन्य ऑर्बिटल्स के लिए इस प्रक्रिया को दोहराऊँगी
p प end ओन ओवरलैप को देखें
अब dz2 ऑर्बिटल उपयोग करके d डी end ओन ओवरलैप बनायें
डिस्प्ले एरिया पर आएं और कीबोर्ड पर बड़ा फ़ दबाएं
सूची से फे सेलेक्ट करें
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें
बॉन्ड बनाने के लिए आयरन परमाणु पर क्लिक करें
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
dz2 ऑर्बिटल रेडियो बटन को सेलेक्ट करें
उचित ओवरलैप के लिए कोअफिशन्ट की वैल्यू 08 तक घटायें
dz2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप के लिए बॉन्ड किये हुए आयरन परमाणु पर क्लिक करें
d डी end ओन ओवरलैप को देखें
अब प ओर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप के बारे में सीखें
निश्चित कर लें कि करंट एलिमेंट कार्बन है
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें
निश्चित करें कि बॉन्ड लेंथ 90 के लगभग हो
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
कोअफिशन्ट की वैल्यू 1 तक बढ़ाएं
प ऑर्बिटल रेडियो बटन पर क्लिक करें
प ऑर्बिटल को ऊर्ध्वाधर स्थिति में घुमाएं यदि यह क्षैतिज स्थिति में हो
बॉन्ड्स के किनारों पर क्लिक करें
p प साइड वाइज ओवरलैप को देखें
इस तरह के ओवरलैप में ओर्बिटल्स के लोब्स समान चिन्ह के होते हैं
आगे हम नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैप्स पर जायेंगे
यहाँ नेगेटिव ओवरलैप्स की एक स्लाइड है
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोली है
अब मैं दर्शाउंगी कि नेगेटिव ओवरलैप कैसे बनाते हैं
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें
निश्चित करें कि बॉन्ड लेंथ 90 के लगभग हो
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
प ऑर्बिटल रेडियो बटन पर क्लिक करें फिर बॉन्ड के किनारे पर क्लिक करें
प ऑर्बिटल को उल्टा करने के लिए इसे 180 डिग्री घुमाएं
फिर बॉन्ड के दूसरे किनारे पर क्लिक करें
नेगेटिव ओवरलैप को देखें
इस प्रकार के ओवरलैप में ऑर्बिटल के लोब्स विपरीत चिन्ह के होते हैं
अब सीखें कि ज़ीरो ओवरलैप कैसे बनाते हैं
यहाँ जीरो ओवरलैप के लिए स्लाइड है
एड आ बोंड टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
एड ओर मॉडिफाई एएन एटोमिक ओर्बिटल टूल पर क्लिक करें
प ऑर्बिटल पर क्लिक करें
प ऑर्बिटल को प्रारंभिक स्थिति में घुमाएं
बॉन्ड के एक किनारे पर क्लिक करें
एस ऑर्बिटल पर क्लिक करें
और फिर बॉन्ड के दूसरे किनारे पर क्लिक करें
ज़ीरो ओवरलैप को देखें
इस प्रकार के ओवरलैप में ऑर्बिटल्स का दिक् विन्यास समान नहीं है
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा भिन्न प्रकार के ओवरलैप्स एंड ऑन और साइड वाइज ओवरलैप्स ओर्बिटल्स को घुमाना और रीसाइज़ करना पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैप्स
यहाँ एक नियत कार्य है
हाइड्रोजन क्लोराइड अणु के साथ s प एंड ऑन ओवरलैप बनायें dxy डीएक्सी ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप बनायें अन्य नेगेटिवऔर ज़ीरो ओवरलैप्स बनायें
संकेत उचित ओवरलैप के लिए ऑर्बिटल्स को घुमाएं और रीसाइज़ करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद